और बीच में कटोरी में कोई चटनी रखी हुई है।

और एक आदमी सामने से आगे की ओर जा रहा है।

ब्लैक कलर का कच्छा पहन रखा है।

कुछ लेडिस नीचे बैठी हुई है।

जिसने रेड कलर का कुछ पहना हुआ है।

एक आदमी ने येलो कलर की टी शर्ट पहेनी हुई है।

और एक लड़के ने ग्रीन कलर की जो शर्ट पहनी हुई है।

यहां सामने एक पोस्टर लगा हुआ है।

ग्रिल के पास एक झंडा लगा हुआ है।

और सामने विंडो पर एक ए_सी लगी हुई है।

इसमें से दो लड़कों ने रेड कलर की टी शर्ट पेहन रखी है।

छ ऊपर लाइटें लगी हुई है।

यहां पर ये पैडियें नजर आ रही है।

और चारों तरफ पेड़ हैं।

जो कि इन कट्टों को उठा रहे हैं।

यहां सामने दो आदमी खड़े हुए हैं।

और ऊपर बहुत सारी लाइटें जल रही हैं।

और इमारत के राइट साइड में भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

और इनमें कुछ झूमर से भी लगे हुए है।

आगे खड़ा हुआ है जो कि चेस्ट वर्कआउट कर रहा है।

और दीवार पर तीन पेंटिंग लगी हुई हैं और ऊपर झालर टाइप टंगी हुई हैं।

और सामने बहुत सारा पानी है।

एक आदमी का हाथ मेज पर रखा हुआ है।

और यहां पर मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है।

और एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपर कार्यालय ज़िला गन्ना अधिकारी शामली लिखा हुआ है।

जिसने चेक में शर्ट पहनी हुई है और ब्लू कलर की पैंट --

यहां सामने एक बैग रखा हुआ है।

सामने एक मका बन रहा है जहां पर ये निकले हुए हैं।

और एक व्हाइट कलर कि कार भी खड़ी है।

दो आदमी खड़े हुए हैं।

और एक मोटरसाइकल भी खड़ी है।

और एक आदमी भी दिख रहा है।

और एक आदमी साइकिल पर अंदर की ओर जा रहा है।